और यहाँ पर दूर-दूर से लोग आकर इसका नज़ारा लेते हैं।

और पेड़-पौधे के साथ-साथ बैठने के जगह भी यहाँ बहोत अच्छी है।

और यह शोरूम है यहाँ पर लोग आकर नये-नये मोडल देखते है ।

इनकम टैक्स रिफंड होता है इनकम टैक्स बिज़नेस रिटर्न भी होता है।

यहाँ पर लोग आकर अपना सारे काम एक साथ करवा सकते हैं।

आस-पास लोग बैठे हुए हैं।

और ये भोला जी का खास गरम जलेबी दूकान है क्योंकि इस --

कलाकारी अह दिखाये गये हैं।

और यह किसी महाराजा ने बनवाया है।

काफी पुराना ऑफिस है यहाँ पर लोग अपने आते हैं और पार्सल सेंड करवाते हैं।

फिक्स प्राइस होता है।

यह फास्ट फूड का ठेला है।

और यह हुल्लासगंज ज जहानाबाद में है।

बच्चे सब मिल-जुल कर खेल रहे हैं।

और यहाँ पर तीन मजदूर लगे हुए हैं।

यहाँ पर जो मिट्टी है ये इन तीनो मिलकर ये मिट्टी को हटा कर --

यहाँ हम देख रहें हैं कि माँ दुर्गा की विषर्जन की जा रही है।

यह एक स्टेशनरी शॉप है यह स्टेशनरी शॉप बुक से भरा हुआ है।

या कोई और चीज़ लग रहा है --